जैसे की आप देख पा रहे हैं की एक समुन्दर का सीन है समुन्दर में एक बड़ा जहाज है तो एक छोटी नाव भी है।

कुछ बच्चे ग्राउंड में भी दिखाई दे रहे हैं कुछ बच्चे क्लास रूम्स के आस-पास भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे --

सेल्फ के सहारे एक कुर्सी रखी गई है सामने ए.सी. लगा हुआ है। एक वाटर प्यूरीफायर है एक हैंड वाश है।